ब्राउन कलर का यहां पर हमें दरवाजा दिख रहा है।

सामने ही एक लेडिस खड़ी हुई पीले सूट में है जिसके पास ब्लैक कलर की चुन्नी है।

इस पिक्चर मे हमे यहां पर दिखाई दे रहा है।

साथ में ही दरवाजे दिख रहे हैं जो कि ब्राउन कलर --

दिख रहा है साथ में ही यहां पर एक बाल्टी पिया में दिखाई दे रही है जो की बाथरूम के अंदर रखी हुई--

छोटे छोटी तीन स्टूल दिख रहे हैं।

पांच छे खिड़कियां निचली की बिल्डिंग में भी नजर आ री है।

चारों तरफ ग्रीन ही ग्रीन ब्राउन कलर का पेड़ दिख रहा--

यहां पर बहुत सारी बाइक्स भी दिखाई दे रही है कुछ कारें सिल्वर कलर की है।

सामने कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं ग्रीन कलर के--

जहां पर हमे ग्रीन तिरपाल दिखाई दे रही है पीछे बर्फ पड़ी हुई दिख रही है।

कुछ केक्स भी रखे हुए नजर आ रहे--

यहां पर हमें एक व्यक्ति चलता हुआ दिख रहा है। सामने ही हमें कुछ बजरी भी दिखाई दे रही है।

गहरे व्हाइट कलर की बिल्डिंग है। सामने ही हमें फूलों की क्यारियां--

इस पिक्चर में हमें यहां पर छोटा सा--